यहाँ पर है भी है जो रोड जा रहे है रोड ऊपर का चलते जा रहा है उदर से--

नारियल के झाड़े आसमान साफ नजर आ रहा है और यहां पेड़ है।

यहाँ एक दुकान है जो यहाँ पर और यहाँ है जो उस तरफ है जो--

यहाँ पर है नदिया जो ब्लू कलर की है और यहाँ पर बोट खड़ी हुई है--

और यहाँ पर कदू भी है और यहाँ पर भी है जो सामने जो ककड़ी है जो सामान काड़ रहे है--

और यहाँ पे है झाड़ जो बड़े-बड़े झाड़ है और आसमान भी नीला नज़र आ रहा है और आगे भी है रास्ता जो पत्तरो का भी दिखाई दे रहा है।

घर का बोर्ड लगाया हरा है रेड है जामुनी है नीला है दो गैस के फुगे है लाइटिंग चालू है कुर्सी है बैठने के लिए--

वहाँ पे समंदर है समंद के अंदर की लहरें आ रही हैं संकट है तो सूरज डूबने के लिए आया हुआ है।

और भी लोग है जो समुन्द्र के बीच में है और कुछ है जो रेम किनारे पर खड़े हुए है।

और यहाँ पर वाटर पार्क जो गोल है अंदर से बाहर आ सकते है।

और बड़े बड़े कर सकते है।

मेरे को मिक्स करते देती है वो और यहाँ पर एक बैंक जो पानी का इस्तेमाल होता हैं--

यहाँ परलकड़ियों कासीढिया बनाये जो ऊपर जाने के लिएऔरखंबा हैं जो यहाँ पर लाइटिंग का हैं।

करेला है हरी मिर्ची है बैगन है और यहाँ पे माफ का भी सामान जो माग सके और लहसुन दिखाई दे रहा है।

यहां पे एक फव्वारा है जो खेतों में पानी दे रहा है झोपड़ी है सामने जो छोटी सी है और यहां पे बड़े बड़े है।

यहाँ पर एक आदमी बैठा हुआ है जो कोने में जा रहा है--

यहां पे एक दुकान है जो बच्चों के कपड़े दिखाएं बॉयज वेयर है और यहां पे भी गर्ल्स के हैं जो फ्रॉक वगैरा है जो बॉयज के पैंट है टी शर्ट है।

रोड और यहाँ पे के भी है यहाँ डस्टबिन रखा हुआ दो लोग है।

यहाँ पर काउंटर पे देख रहे है और एक रास्ता है जाने के लिए लाइटिंग चालू हैअंधेरा टाइम है रात--

यहाँ पे लैपटॉप रखा हुआ है जो यहाँ पे सिखाने का काम करते है दिवार का --

यहाँ पर टेबल्स है जो पूरी थोड़े खाली है और एक बेग रखा हुआ है और वही टेबल पे।

यहाँ पर होटल है जिसका नाम है होटल गेट कर्नाटक है जो यहाँ पे होटल है अंदर लाइट चालू है अंधेरा है रात का टाइम है काउंटर है।

वहाँ लोग जा रहे है वहाँ के होटल में ऊपर रूम है जो रूम है खिड़की में पर्दा लगा है व्हाइट कलर --

और यहाँ पर कुछ मशीन है जो पहाड़ के ऊपर ले जा के साफ कर सकती है और काउंटर यहाँ पर बॉक्स है लगे --

अभी पे लोग बैठे हुए है यहाँ पे है ये जाने के लिए उनकी फॅमिली भी बैठी हुई है।

और यहाँ पे दूर दूर तक है बदलो में बारिश का टाइम है।

यहाँ पे जो जंगल है हरा भरा है और पे और यहाँ आगे देखने में यहाँ पे एक शेर नज़र आ रहा है जो खड़ा है --

है इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान जो यहां पे इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें हैंमिलते --

जो वाशिंग मशीन है अलग-अलग कंपनी के अलग-अलग किस्म के अलग-अलग शेप में है और यहां पे है जो काले कलर के बड़े भी है और यहां पे--

जाने के लिए रास्ता है और यहां पे झाड़ हरे भरे फूलों की भी झाड़ है यहां पे और यहां पे एक मट्टी का डेग लगाया हुआ हैसाइड --

घरनियों में चॉकलेट टॉफी फर्शन रखा हुआ है और यहां पर लड़कियों की एक्सेसरी है जो यहां पे प्यास है चूड़िया है पेपर है।

यहां पे एक गार्डन है जो यहां पे जूम गार्डन है यहां पे पिंजरे में एक शेर है जो खुला है जो उनसे यहां पे--

बड़े-बड़े दीवाले हैं यहां पे और यहां पे घांस है जाने के लिए सिलियां भी नजर आ रही है।

यहाँ पे हरियाली भी हैऔर तालाब भी है और यहां पे बड़े-बड़े डोंगर भी है।

और पर एक पोस्टर है जिसका यहां पे लिखा ल और मोहब्बत है मोहम्मद है और यहां पे फैन है जो फैन बंद--

और यहां पे उंगलियां लटकी हुई है जो यहां पे खेल सकते हैं आसमान दिखाई दे रहा है आसमान का कलर नीला है।

यहां पे है एक दुकान जो लड़कियों के कपड़े नजर आ रहे हैं और यहां पे लाइटिंग चालू है---

यहाँ पे घर है और यहाँ पे भी दुकान है अंशु स्किन केयर नीचे सेट और यहाँ पे है सजाया हुआ ।

पूरे लाइटिंग का काम है जो सजाए हुए है लाइटिंग नीचे तक लाइटिंग आई हुई है और यहाँ पे रंगोली बनाई हुई है इसके सामने दिए लगाए गए है ।

यहाँ पे केक है जिसका डेकरैशन है ओ रेड कलर का दिलों का डेकरैशन किया गया है कलर --

और सामने काउन्टर पे है जलेबी अलग अलग किस्म के यहाँ पर रखे हुए है खाने के आइटम --

ये है और यहाँ पे हरे भरे झाड़ है जो अशोके पे है आसमान नीला नज़र आ रहा है यहाँ पे --

और साइड में शो के झाड़ भी है जो यहाँ पे तलाब के साइड में है जाली भी हमारे वहाँ है जना --

ऑल सी भी कॉल है जो अलग अलग बड़े से छोटे डब्बों में भी रखा हुआ है सील रखा हुआ है यहाँ पे जो कॉमेस टैटू रखा हुआ है ।

यहां पे गार्डन है गार्डन में हरियाली है और यहां पे बड़े-बड़े झाड़ है और एक यहां पे शेर मरा हुआ है जो बहोत बड़ा है और यहां पे आसमान नजर आ रहा --

यहाँ पे एक दुकान है जो यहाँ पे चिप्स रखे हुए है कुरकुरे रखे हुए है और यहाँ पे केले भी लटकाए हुए है जो हरे कलर है और --

पके हुए भी केले है यहाँ पे साइड में एक दुकान है जो बंद है और यहाँ पे एक टेबल है जो यहाँ पे रखे हुए सामान है टेबल के ऊपर --

यहाँ पे पेट्रोलियम जहाँ पे गाड़ी ठो गाडियाँ ये जो पेट्रोल भरने का काम किए यहाँ पे बहुत सारे है जो पेट्रोल भरने आए ।

पिलर है यहाँ पे और यहाँ पे है इंडिया लिखा हुआ है जो पोमपेट है पमपेट लाल कलर में व्हाइट कलर की छत्त है ।